यह हम देख सकते हैं की यह एक पहाड़ का एरिया है।

यहां पर बड़े बड़े पहाड़ छोटे छोटे घर--

यहां पर खिड़कियां हम देख सकते है और पंखे लगे हुए है।

यहां पर हमें पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

कटिंग और शेविंग कर रहा हैं और एक सामने शीशा लगा हुआ है। नीले रंग की कुर्सी यहां रखी हुई है। कुछ फोटोए हम यहां देख सकते हैं।

और एक आदमी यहां फोटो खिंचवा रहा है जिसने सिर पर नीले सी पन्नी।

क्योंकि लड़कियों ने जैकेट पहनी हुई है।

यहां पर हम एक कैफे देख सकते हैं।

सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है खाने के समान का मेन्यू --

सामने दो तीन स्कैनर पड़े हुए हैं।

हम यहां देख सकते हैं कि यह किसी मंदिर की फोटो है।

पीछे कोको कोला का फ्रिज लगा हुआ है जिसमें--

यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर कोई पूजा चल रही है।